इसमें लाइट लगी है नीचे देख ऊपर से पानी निकल रहा है जो सुनहरा कलर का दिखने में बहोत ही सुन--

सब बैठे हैं ढाबे पे रेस्टोरेंट में सब पानी की बोतल है।

ये छोटा सा और भी बड़ा होता है देखने में अच्छा लग रहा है ये फोटो बड़ी प्यारी --

काफी लोग घूम रहे हैं यहां पे देखने में अच्छा भी लगता है सब इधर-उधर है सब घूमने में लगे हुए घूमने के लिए आते हैं।

यह रूम है इसे खिड़की पे वो लकड़ी पे ऐसी लगा है बाहर दरवाजा जाने का।

यहां सब अपना जो भी काम होता है यहां आके सब सबमिट करते हैं।

हम महाराष्ट्रीय महाराष्ट्रीची पर्यटन राजधानी औरंगाबाद --